मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
एक लम्बे अंतराल के बाद फिर से एक बार आप सबके बीच मन की बात जन की बात जनजन की बात जनमन की बात इसका हम सिलसिला प्रारम्भ कर रहे हैं
चुनाव की आपाधापी में व्यस्तता तो बहुत थी लेकिन मन की बातका जो मजा है वो गायब था
एक कमी महसूस कर रहा था
अपनों के बीच बैठ के हल्केफुल्के माहौल में 130 करोड़ देशवासियों के परिवार के एक स्वजन के रूप में कई बातें सुनते थे दोहराते थे और कभीकभी अपनी ही बातें अपनों के लिए प्रेरणा बन जाती थी
आप कल्पना कर सकते हैं कि ये बीच का कालखण्ड गया होगा कैसा गया होगा
रविवार आख़िरी रविवार 11 बजे मुझे भी लगता था कि अरे कुछ छूट गया आपको भी लगता था ना जरुर लगता होगा
शायद ये कोई निर्जीव कार्यक्रम नहीं था
इस कार्यक्रम में जीवन्तता थी अपनापन था मन का लगाव था दिलों का जुड़ाव था और इसके कारण बीच का जो समय गया वो समय बहुत कठिन लगा मुझे
मैं हर पल कुछ मिस कर रहा था और जब मैं मन की बात करता हूँ तब बोलता भले मैं हूँ शब्द शायद मेरे हैं आवाज़ मेरी है लेकिन कथा आपकी है पुरुषार्थ आपका है पराक्रम आपका है
मैं तो सिर्फ मेरे शब्द मेरी वाणी का उपयोग करता था और इसके कारण मैं इस कार्यक्रम को नहीं आपको मिस कर रहा था
एक खालीपन महसूस कर रहा था
एक बार तो मन कर गया था कि चुनाव समाप्त होते ही तुरंत ही आपके बीच ही चला आऊँ
लेकिन फिर लगा नहीं वो सुंदय वाला क्रम बना रहना चाहिये
लेकिन इस सुंदय ने बहुत इंतज़ार करवाया
खैर आखिर मौक़ा मिल ही गया है
एक पारिवारिक माहौल में मन की बात छोटीछोटीहल्कीफुल्की समाज जीवन में जो बदलाव का कारण बनती है एक प्रकार से उसका ये सिलसिला एक नये स्पिरिट को जन्म देता हुआ और एक प्रकार से न्यू इंडिया के स्पिरिट को सामर्थ्य देता हुआ ये सिलसिला आगे बढ़े
कई सारे सन्देश पिछले कुछ महीनों में आये हैं जिसमें लोगों ने कहा कि वो मन की बात को मिस कर रहे हैं
जब मैं पढता हूँ सुनता हूँ मुझे अच्छा लगता है
मैं अपनापन महसूस करता हूँ
कभीकभी मुझे ये लगता है कि ये मेरी स्व से समष्टि की यात्रा है
ये मेरी अहम से वयम की यात्रा है
मेरे लिए आपके साथ मेरा ये मौन संवाद एक प्रकार से मेरी स्पिरिचुअल यात्रा की अनुभूति का भी अंश था
कई लोगों ने मुझे चुनाव की आपाधापी में मैं केदारनाथ क्यों चला गया बहुत सारे सवाल पूछे हैं
आपका हक़ है आपकी जिज्ञासा भी मैं समझ सकता हूँ और मुझे भी लगता है कि कभी मेरे उन भावों को आप तक कभी पहुँचाऊँलेकिन आज मुझे लगता है कि अगर मैं उस दिशा में चल पड़ूंगा तो शायद मन की बात का रूप ही बदल जाएगा और इसलिए चुनाव की इस आपाधापी जयपराजय के अनुमान अभी पोलिंग भी बाकी था और मैं चल पड़ा
ज्यादातर लोगों ने उसमें से राजनीतिक अर्थ निकाले हैं
मेरे लिये मुझसे मिलने का वो अवसर था
एक प्रकार से मैं मुझे मिलने चला गया था
मैं और बातें तो आज नहीं बताऊंगा लेकिन इतना जरुर करूँगा कि मन की बात के इस अल्पविराम के कारण जो खालीपन था केदार की घाटी में उस एकांत गुफा में शायद उसने कुछ भरने का अवसर जरूर दिया था
बाकी आपकी जिज्ञासा है सोचता हूँ कभी उसकी भी चर्चा करूँगा
कब करूँगा मैं नहीं कह सकता लेकिन करूँगा जरुर क्योंकि आपका मुझ पर हक़ बनता है
जैसे केदार के विषय में लोगों ने जानने की इच्छा व्यक्त की है वैसे एक सकारात्मक चीजों को बल देने का आपका प्रयास आपकी बातों में लगातार मैं महसूस करता हूँ
मन की बात के लिए जो चिट्ठियाँ आती हैं जो इनपुट प्राप्त होते हैं वो राउटाइन सरकारी कामकाज से बिल्कुल अलग होते हैं
एक प्रकार से आपकी चिट्ठी भी मेरे लिये कभी प्रेरणा का कारण बन जाती है तो कभी ऊर्जा का कारण बन जाती है
कभीकभी तो मेरी विचार प्रक्रिया को धार देने का काम आपके कुछ शब्द कर देते हैं
लोग देश और समाज के सामने खड़ी चुनौतियों को सामने रखते हैं तो उसके साथसाथ समाधान भी बताते हैं
मैंने देखा है कि चिट्ठियों में लोग समस्याओं का तो वर्णन करते ही हैं लेकिन ये भी विशेषता है कि साथसाथ समाधान का भी कुछनकुछ सुझाव कुछनकुछ कल्पना प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में प्रगट कर देते हैं
अगर कोई स्वच्छता के लिए लिखता है तो गन्दगी के प्रति उसकी नाराजगी तो जता रहा है लेकिन स्वच्छता के प्रयासों की सराहना भी करता है
कोई पर्यावरण की चर्चा करता है तो उसकी पीड़ा तो महसूस होती है लेकिन साथसाथ उसने ख़ुद ने जो प्रयोग किये हैं वो भी बताता है जो प्रयोग उसने देखे हैं वो भी बताता है और जो कल्पनायें उसके मन में हैं वो भी चित्रित करता है
यानी एक प्रकार से समस्याओं का समाधान समाजव्यापी कैसे हो इसकी झलक आपकी बातों में मैं महसूस करता हूँ
मन की बात देश और समाज के लिए एक आईने की तरह है
ये हमें बताता है कि देशवासियों के भीतर अंदरूनी मजबूती ताकत और टैलेंट की कोई कमी नहीं है
जरुरत है उन मजबूतियों और टैलेंट को समाहित करने की अवसर प्रदान करने की उसको क्रियान्वित करने की
मन की बात ये भी बताता है कि देश की तरक्की में सारे 130 करोड़ देशवासी मजबूती और सक्रियता से जुड़ना चाहते हैं और मैं एक बात जरुर कहूँगा किमन की बात में मुझे इतनी चिट्ठियाँ आती हैं इतने टेलीफोन कॉल आते हैं इतने सन्देश मिलते हैं लेकिन शिकायत का तत्व बहुत कम होता है और किसी ने कुछ माँगा हो अपने लिए माँगा हो ऐसी तो एक भी बात गत पांच वर्ष में मेरे ध्यान में नहीं आयी है
आप कल्पना कर सकते हैं देश के प्रधानमंत्री को कोई चिट्ठी लिखे लेकिन ख़ुद के लिए कुछ मांगे नहीं ये देश के करोड़ों लोगों की भावना कितनी ऊँची होगी
मैं जब इन चीजों को एनालिसिस करता हूँ आप कल्पना कर सकते हैं मेरे दिल को कितना आनंद आता होगा मुझे कितनी ऊर्जा मिलती होगी
आपको कल्पना नहीं है कि आप मुझे चलाते हैं आप मुझे दौड़ाते हैं आप मुझे पलपल प्राणवान बनाते रहते हैं और यही नाता मैं कुछ मिस करता था
आज मेरा मन खुशियों से भरा हुआ है
जब मैंने आखिर में कहा था कि हम तीनचार महीने के बाद मिलेंगे तो लोगों ने उसके भी राजनीतिक अर्थ निकाले थे और लोगों ने कहा कि अरे मोदी जी का कितना कॉन्फिडेंस है उनको भरोसा है
कॉन्फिडेंस मोदी का नहीं था ये विश्वास आपके विश्वास के फाउंडेशन का था
आप ही थे जिसने विश्वास का रूप लिया था और इसी के कारण सहज रूप से आख़िरी मन की बात में मैंने कह दिया था कि मैं कुछ महीनों के बाद फिर आपके पास आऊँगा
Actually मैं आया नहीं हूँ आपने मुझे लाया है आपने ही मुझे बिठाया है और आपने ही मुझे फिर से एक बार बोलने का अवसर दिया है
इसी भावना के साथ चलिए मन की बात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं
जब देश में आपातकाल लगाया गया तब उसका विरोध सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित नहीं रहा था राजनेताओं तक सीमित नहीं रहा था जेल के सलाखों तक आन्दोलन सिमट नहीं गया था
जनजन के दिल में एक आक्रोश था
खोये हुए लोकतंत्र की एक तड़प थी
दिनरात जब समय पर खाना खाते हैं तब भूख क्या होती है इसका पता नहीं होता है वैसे ही सामान्य जीवन में लोकतंत्र के अधिकारों की क्या मज़ा है वो तो तब पता चलता है जब कोई लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन लेता है
आपातकाल में देश के हर नागरिक को लगने लगा था कि उसका कुछ छीन लिया गया है
जिसका उसने जीवन में कभी उपयोग नहीं किया था वो भी अगर छिन गया है तो उसका एक दर्द उसके दिल में था और ये इसलिए नहीं था कि भारत के संविधान ने कुछ व्यवस्थायें की हैं जिसके कारण लोकतंत्र पनपा है
समाज व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की भी जरुरत होती है कायदे कानून नियमों की भी आवश्यकता होती है अधिकार और कर्तव्य की भी बात होती है लेकिन भारत गर्व के साथ कह सकता है कि हमारे लिए कानून नियमों से परे लोकतंत्र हमारे संस्कार हैं लोकतंत्र हमारी संस्कृति है लोकतंत्र हमारी विरासत है और उस विरासत को लेकरके हम पलेबड़े लोग हैं और इसलिए उसकी कमी देशवासी महसूस करते हैं और आपातकाल में हमने अनुभव किया था और इसीलिए देश अपने लिए नहीं एक पूरा चुनाव अपने हित के लिए नहीं लोकतंत्र की रक्षा के लिए आहूत कर चुका था
शायद दुनिया के किसी देश में वहाँ के जनजन ने लोकतंत्र के लिए अपने बाकी हकों की अधिकारों कीआवश्यकताओं की परवाह ना करते हुए सिर्फ लोकतंत्र के लिए मतदान किया होतो ऐसा एक चुनाव इस देश ने 77 सतत्तर में देखा था
हाल ही में लोकतंत्र का महापर्व बहुत बड़ा चुनाव अभियान हमारे देश में संपन्न हुआ
अमीर से लेकर ग़रीब सभी लोग इस पर्व में खुशी से हमारे देश के भविष्य का फैसला करने के लिए तत्पर थे
जब कोई चीज़ हमारे बहुत करीब होती है तो हम उसके महत्व को अंडरेस्टिमेट कर देते हैं उसके अमेजिंग फैक्ट्स भी नजरअंदाज हो जाते हैं
हमें जो बहुमूल्य लोकतंत्र मिला है उसे हम बहुत आसानी से ग्रांटेड मान लेते हैं लेकिन हमें स्वयं को यह याद दिलाते रहना चाहिए कि हमारा लोकतंत्र बहुत ही महान है और इस लोकतंत्र को हमारी रगों में जगह मिली है सदियों की साधना से पीढ़ीदरपीढ़ी के संस्कारों से एक विशाल व्यापक मन की अवस्था से
भारत में 2019 के लोकसभा चुनाव में 61 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट दियाsixty oneCrore
यह संख्या हमें बहुत ही सामान्य लग सकती है लेकिन अगर दुनिया के हिसाब से मैं कहूँ अगर एक चीन को हम छोड़ दे तो भारत में दुनिया के किसी भी देश की आबादी से ज्यादा लोगों ने वोटिंग किया था
जितने मतदाताओं ने 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट दिया उनकी संख्या अमेरिका की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है करीब दोगुनी है
भारत में कुल मतदाताओं की जितनी संख्या है वह पूरे यूरोप की जनसंख्या से भी ज्यादा है
यह हमारे लोकतंत्र की विशालता और व्यापकता का परिचय कराती है
2019 का लोकसभा का चुनाव अब तक के इतिहास में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव था
आप कल्पना कर सकते हैं इस प्रकार के चुनाव संपन्न कराने में कितने बड़े स्तर पर संसाधनों और मानवशक्ति की आवश्यकता हुई होगी
लाखों शिक्षकों अधिकारियों और कर्मचारियों की दिनरात मेहनत से चुनाव संभव हो गया
लोकतंत्र के इस महायज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए जहाँ अर्द्धसैनिक बलों के करीब 3 लाख सुरक्षाकर्मियों ने अपना दायित्व निभायावहीँ अलगअलग राज्यों के 20 लाख पुलिसकर्मियों ने भी परिश्रम की पराकाष्ठा की
इन्हीं लोगों की कड़ी मेहनत के फलस्वरूप इस बार पिछली बार से भी अधिक मतदान हो गया
मतदान के लिए पूरे देश में करीब 10 लाख पोलिंग स्टेशन करीब 40 लाख से ज्यादा ईवीएम ईवीएम मशीन 17 लाख से ज्यादा वीवीपैट वीवीपैट मशीन आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा तामझाम
ये सब इसलिए किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई मतदाता अपने मताधिकार से वंचित ना हो
अरुणाचल प्रदेश के एक रिमोट इलाके में महज एक महिला मतदाता के लिए पोलिंग स्टेशन बनाया गया
आपको यह जानकार आश्चर्य होगा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों को वहाँ पहुँचने के लिए दोदो दिन तक यात्रा करनी पड़ी यही तो लोकतंत्र का सच्चा सम्मान है
दुनिया में सबसेज्यादा ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र भी भारत में ही है
यह मतदान केंद्र हिमाचल प्रदेश के लाहौलस्फिति क्षेत्र में 15000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है
इसके अलावा इस चुनाव में गर्व से भर देने वाला एक और तथ्य भी है
शायदइतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि महिलाओं ने पुरुषों की तरह ही उत्साह से मतदान किया है
इस चुनाव में महिलाओं और पुरुषों का मतदान प्रतिशत करीबकरीब बराबर था
इसी से जुड़ा एक और उत्साहवर्धक तथ्य यह है कि आज संसद में रिकॉर्ड 78 सेवेंटी आइट महिला सांसद हैं
मैं चुनाव आयोग को और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को बहुतबहुत बधाई देता हूँ और भारत के जागरूक मतदाताओं को नमन करता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियो आपने कई बार मेरे मुहँ से सुना होगा बूके नहीं बुक मेरा आग्रह था कि क्या हम स्वागतसत्कार में फूलों के बजाय किताबें दे सकते हैं
तब से काफ़ी जगह लोग किताबें देने लगे हैं
मुझे हाल ही में किसी ने प्रेमचंद की लोकप्रिय कहानियाँ नाम की पुस्तक दी
मुझे बहुत अच्छा लगा
हालांकि बहुत समय तो नहीं मिल पाया लेकिन प्रवास के दौरान मुझे उनकी कुछ कहानियाँ फिर से पढ़ने का मौका मिल गया
प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में समाज का जो यथार्थ चित्रण किया है पढ़ते समय उसकी छवि आपके मन में बनने लगती है
उनकी लिखी एकएक बात जीवंत हो उठती है
सहज सरल भाषा में मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने वाली उनकी कहानियाँ मेरे मन को भी छू गई
उनकी कहानियों में समूचे भारत का मनोभाव समाहित है
जब मैं उनकी लिखी नशा नाम की कहानी पढ़ रहा था तो मेरा मन अपनेआप ही समाज में व्याप्त आर्थिक विषमताओं पर चला गया
मुझे अपनी युवावस्था के दिन याद आ गए कि कैसे इस विषय पर रातरात भर बहस होती थी
जमींदार के बेटे ईश्वरी और ग़रीब परिवार के बीर की इस कहानी से सीख मिलती है कि अगर आप सावधान नहीं हैं तो बुरी संगति का असर कब चढ़ जाता है पता ही नहीं लगता है
दूसरी कहानी जिसने मेरे दिल को अंदर तक छू लिया वह थी ईदगाह एक बालक की संवेदनशीलता उसका अपनी दादी के लिए विशुद्ध प्रेम उतनी छोटी उम्र में इतना परिपक्व भाव
45 साल का हामिद जब मेले से चिमटा लेकर अपनी दादी के पास पहुँचता है तो सच मायने में मानवीय संवेदना अपने चरम पर पहुँच जाती है
इस कहानी की आखिरी पंक्ति बहुत ही भावुक करने वाली है क्योंकि उसमें जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई थी
ऐसी ही एक बड़ी मार्मिक कहानी है पूस की रात
इस कहानी में एक ग़रीब किसान जीवन की विडंबना का सजीव चित्रण देखने को मिला
अपनी फसल नष्ट होने के बाद भी हल्दू किसान इसलिए खुश होता है क्योंकि अब उसे कड़ाके की ठंड में खेत में नहीं सोना पड़ेगा
हालांकि ये कहानियाँ लगभग सदी भर पहले की हैं लेकिन इनकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही महसूस होती है
इन्हें पढ़ने के बाद मुझे एक अलग प्रकार की अनुभूति हुई
जब पढ़ने की बात हो रही है तभी किसी मीडिया में मैं केरल की अक्षरा लाइब्ररी के बारे में पढ़ रहा था
आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये लाइब्रेरी इडुक्कीIdukki के घने जंगलों के बीच बसे एक गाँव में है
यहाँ के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक पीके मुरलीधरन और छोटी सी चाय की दुकान चलाने वाले पीवी चिन्नाथम्पी इन दोनों ने इस लाइब्रेरी के लिए अथक परिश्रम किया है
एक समय ऐसा भी रहा जब गट्ठर में भरकर और पीठ पर लादकर यहाँ पुस्तकें लाई गई
आज ये लाइब्ररी आदिवासी बच्चों के साथ हर किसी को एक नई राह दिखा रही है
गुजरात में वांचे गुजरात अभियान एक सफल प्रयोग रहा
लाखों की संख्या में हर आयु वर्ग के व्यक्ति ने पुस्तकें पढ़ने के इस अभियान में हिस्सा लिया था
आज की डिजिटल दुनिया में गूगल गुरु के समय में मैं आपसे भी आग्रह करूँगा कि कुछ समय निकालकर अपने डेली राउटाइन में किताब को भी जरुर स्थान दें
आप सचमुच में बहुत एंजॉय करेंगे और जो भी पुस्तक पढ़े उसके बारे में नरेंद्रमोदी App पर जरुर लिखें ताकि मन की बात के सारे श्रोता भी उसके बारे में जान पायेंगे
मेरे प्यारे देशवासियो मुझे इस बात की ख़ुशी है कि हमारे देश के लोग उन मुद्दों के बारे में सोच रहे हैं जो न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य के लिए भी बड़ी चुनौती है
मैं नरेंद्रमोदी App और माइगोव पर आपके कमेंट्स पढ़ रहा था और मैंने देखा कि पानी की समस्या को लेकर कई लोगों ने बहुत कुछ लिखा है
बेलगावी Belagaviके पवन गौराई भुवनेश्वर के सितांशू मोहन परीदा इसके अलावा यश शर्मा शाहाब अल्ताफ और भी कई लोगों ने मुझे पानी से जुड़ी चुनौतियों के बारे में लिखा है
पानी का हमारी संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व है
ऋग्वेद के आपः सुक्तम् में पानी के बारे में कहा गया है
आपो हिष्ठा मयो भुवः स्था न ऊर्जे दधातन महे रणाय चक्षसे
यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयतेह नः उषतीरिव मातरः
अर्थात जल ही जीवन दायिनी शक्ति ऊर्जा का स्त्रोत है
आप माँ के समान यानि मातृवत अपना आशीर्वाद दें
अपनी कृपा हम पर बरसाते रहें
पानी की कमी से देश के कई हिस्से हर साल प्रभावित होते हैं
आपको आश्चर्य होगा कि साल भर में वर्षा से जो पानी प्राप्त होता है उसका केवल 8 हमारे देश में बचाया जाता है
सिर्फसिर्फ 8 अब समय आ गया है इस समस्या का समाधान निकाला जाए
मुझे विश्वास है हम दूसरी और समस्याओं की तरह ही जनभागीदारी से जनशक्ति से एक सौ तीस करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य सहयोग और संकल्प से इस संकट का भी समाधान कर लेंगे
जल की महत्ता को सर्वोपरि रखते हुए देश में नया जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है
इससे पानी से संबंधित सभी विषयों पर तेज़ी से फैसले लिए जा सकेंगे
कुछ दिन पहले मैंने कुछ अलग करने का प्रयास किया
मैंने देश भर के सरपंचों को पत्र लिखा ग्राम प्रधान को
मैंने ग्राम प्रधानों को लिखा कि पानी बचाने के लिए पानी का संचय करने के लिए वर्षा के बूंदबूंद पानी बचाने के लिए वे ग्राम सभा की बैठक बुलाकर गाँव वालों के साथ बैठकर के विचारविमर्श करें
मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने इस कार्य में पूरा उत्साह दिखाया है और इस महीने की 22 तारीख को हजारों पंचायतों में करोड़ों लोगों ने श्रमदान किया
गाँवगाँव में लोगों ने जल की एकएक बूंद का संचय करने का संकल्प लिया
आज मन की बात कार्यक्रम में मैं आपको एक सरपंच की बात सुनाना चाहता हूँ
सुनिए झारखंड के हजारीबाग जिले के कटकमसांडी ब्लॉक की लुपुंग पंचायत के सरपंच ने हम सबको क्या सन्देश दिया है
मेरा नाम दिलीप कुमार रविदास है
पानी बचाने के लिए जब प्रधानमंत्री जी ने हमें चिट्ठी लिखी तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री ने हमें चिट्ठी लिखी है
जब हमने 22 तारीख को गाँव के लोगों को इकट्ठा करके प्रधानमंत्री कि चिट्ठी पढ़कर सुनाई तो गाँव के लोग बहुत उत्साहित हुए और पानी बचाने के लिए तालाब की सफाई और नया तालाब बनाने के लिए श्रमदान करके अपनी अपनी भागीदारी निभाने के लिए तैयार हो गए
बारिश से पहले यह उपाय करके आने वाले समय में हमें पानी कि कमी नहीं होगी
यह अच्छा हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री ने हमें ठीक समय पर आगाह कर दिया
बिरसा मुंडा की धरती जहाँ प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहना संस्कृति का हिस्सा है
वहाँ के लोग एक बार फिर जल संरक्षण के लिए अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं
मेरी तरफ से सभी ग्राम प्रधानों को सभी सरपंचों को उनकी इस सक्रियता के लिए बहुतबहुत शुभकामनायें
देशभर में ऐसे कई सरपंच हैं जिन्होंने जल संरक्षण का बीड़ा उठा लिया है
एक प्रकार से पूरे गाँव का ही वो अवसर बन गया है
ऐसा लग रहा है कि गाँव के लोग अब अपने गाँव में जैसे जल मंदिर बनाने के स्पर्धा में जुट गए हैं
जैसा कि मैंने कहा सामूहिक प्रयास से बड़े सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं
पूरे देश में जल संकट से निपटने का कोई एक फ़ॉर्मूला नहीं हो सकता है
इसके लिए देश के अलगअलग हिस्सों में अलगअलग तरीके से प्रयास किये जा रहे हैं
लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है और वह है पानी बचाना जल संरक्षण
पंजाब में ड्रेनेज लाइन्स को ठीक किया जा रहा है
इस प्रयास से वाटर लॉगिंग की समस्या से छुटकारा मिल रहा है
तेलंगाना के थिम्मईपल्ली थिमाईपल्ली में टैंक के निर्माण से गाँवों के लोगों की जिंदगी बदल रही है
राजस्थान के कबीरधाम में खेतों में बनाए गए छोटे तालाबों से एक बड़ा बदलाव आया है
मैं तमिलनाडु के वेल्लोर Velloreमें एक सामूहिक प्रयास के बारे में पढ़ रहा था जहाँ नागनदी Naagnadhiको पुनर्जीवित करने के लिए 20 हजार महिलाएँ एक साथ आई
मैंने गढ़वाल की उन महिलाओं के बारे में भी पढ़ा है जो आपस में मिलकर रेनवाटर हार्वेस्टिंग पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं
मुझे विश्वास है कि इस प्रकार के कई प्रयास किये जा रहे हैं और जब हम एकजुट होकर मजबूती से प्रयास करते हैं तो असम्भव को भी सम्भव कर सकते हैं
जब जनजन जुड़ेगा जल बचेगा
आज मन की बात के माध्यम से मैं देशवासियों से 3 अनुरोध कर रहा हूँ
मेरा पहला अनुरोध है जैसे देशवासियों ने स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया
आइए वैसे ही जल संरक्षण के लिए एक जन आंदोलन की शुरुआत करें
हम सब साथ मिलकर पानी की हर बूंद को बचाने का संकल्प करें और मेरा तो विश्वास है कि पानी परमेश्वर का दिया हुआ प्रसाद है पानी पारस का रूप है
पहले कहते थे कि पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है
मैं कहता हूँ पानी पारस है और पारस से पानी के स्पर्श से नवजीवन निर्मित हो जाता है
पानी की एकएक बूंद को बचाने के लिए एक जागरूकता अभियान की शुरुआत करें
इसमें पानी से जुड़ी समस्याओं के बारे में बतायें साथ ही पानी बचाने के तरीकों का प्रचारप्रसार करें
मैं विशेष रूप से अलगअलग क्षेत्र की हस्तियों से जल संरक्षण के लिएinnovative कैम्पेन्स का नेतृत्व करने का आग्रह करता हूँ
फिल्म जगत हो खेल जगत हो मीडिया के हमारे साथी हों सामाजिक संगठनों से जुड़ें हुए लोग हों सांस्कृतिक संगठनों से जुड़ें हुए लोग हों कथाकीर्तन करने वाले लोग हों हर कोई अपनेअपने तरीके से इस आंदोलन का नेतृत्व करें
समाज को जगायें समाज को जोड़ें समाज के साथ जुटें
आप देखिये अपनी आंखों के सामने हम परिवर्तन देख पायेंगें
देशवासियों से मेरा दूसरा अनुरोध है
हमारे देश में पानी के संरक्षण के लिए कईपारंपरिकतौरतरीके सदियों से उपयोग में लाए जा रहे हैं
मैं आप सभी से जल संरक्षण के उन पारंपरिक तरीकों को शेयर करने का आग्रह करता हूँ
आपमें से किसी को अगर पोरबंदरपूज्य बापू के जन्म स्थान पर जाने का मौका मिला होगा तो पूज्य बापू के घर के पीछे ही एक दूसरा घर है वहाँ पर 200 साल पुराना पानी काटांकावाटर स्टोरेज टैंक है और आज भी उसमें पानी है और बरसात के पानी को रोकने की व्यवस्था है तो मैं हमेशा कहता था कि जो भी कीर्ति मंदिर जायें वो उस पानी के टांके को जरुर देखें
ऐसे कई प्रकार के प्रयोग हर जगह पर होंगे
आप सभी से मेरा तीसरा अनुरोध है
जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों का स्वयं सेवी संस्थाओं का और इस क्षेत्र में काम करने वाले हर किसी का उनकी जो जानकारी हो उसे आप शेयर करें ताकि एक बहुत ही समृद्ध पानी के लिए समर्पित पानी के लिए सक्रिय संगठनों का व्यक्तियों का एक डेटाबेस बनाया जा सके
आइये हम जल संरक्षण से जुड़ें ज्यादा से ज्यादा तरीकों की एक सूची बनाकर लोगों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करें
आप सभी JanShakti4JalShaktiहैशटैग का उपयोग करके अपना कंटेंट शेयर कर सकते हैं
मेरे प्यारे देशवासियो मुझे और एक बात के लिए भी आपका आभार व्यक्त करना है और दुनिया के लोगों का भी आभार व्यक्त करना है
21 जून को फिर से एक बार योग दिवस में जिस सक्रियता के साथ उमंग के साथ एकएक परिवार के तीनतीन चारचार पीढ़ियाँएक साथ आ करके योग दिवस को मनाया
Holistic हेल्थ केयर के लिए जो जागरूकता आई है उसमें योग दिवस का माहात्म्य बढ़ता चला जा रहा है
हर कोई विश्व के हर कोने में सूरज निकलते ही अगर कोई योग प्रेमी उसका स्वागत करता है तो सूरज ढ़लते की पूरी यात्रा है
शायद ही कोई जगह ऐसी होगी जहाँ इंसान हो और योग के साथ जुड़ा हुआ न हो इतना बड़ा योग ने रूप ले लिया है
भारत में हिमालय से हिन्द महासागर तक सियाचिन से लेकर सबमरीन तक एयरफोर्स से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर्स तक एसी जिम्स से लेकर तपते रेगिस्तान तक गांवो से लेकर शहरों तक जहां भी संभव था ऐसी हर जगह पर ना सिर्फ योग किया गया बल्कि इसे सामूहिक रूप से सेलिब्रेट भी किया गया
दुनिया के कई देशों के राष्ट्रपतियों प्रधानमंत्रियों जानीमानी हस्तियोंसामान्य नागरिकों ने मुझे ट्विटर पर दिखाया कि कैसे उन्होंने अपनेअपने देशों में योग मनाया
उस दिन दुनिया एक बड़े खुशहाल परिवार की तरह लग रही थी
हम सब जानते हैं कि एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए स्वस्थ और संवेदनशील व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और योग यही सुनिश्चित करता है
इसलिए योग का प्रचारप्रसार समाज सेवा का एक महान कार्य है
क्या ऐसी सेवा को मान्यता देकर उसे सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए वर्ष 2019 में योग के प्रोमोशन और डेवलपमेंट में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्राइम ministerएस अवार्ड्स की घोषणा अपने आप में मेरे लिए एक बड़े संतोष की बात थी
यह पुरस्कार दुनिया भर के उन संगठनों को दिया गया है जिसके बारे में आपने कल्पना तक नहीं की होगी कि उन्होंने कैसे योग के प्रचारप्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं
उदाहरण के लिए जापान योग निकेतन को लीजिए जिसने योग कोपूरे जापान में लोकप्रिय बनाया है
जापानयोग निकेतन वहां के कई इंस्टीट्यूट और ट्रेनिंग कोर्सेस चलाता है या फिर इटली की एमएस
एंटोनिएटा रोज्जी उन्हीं का नाम ले लीजिए जिन्होंने सर्व योग इंटरनेशनल की शुरुआत की और पूरे यूरोप में योग का प्रचारप्रसार किया
ये अपने आप में प्रेरक उदाहरण हैं
अगर यह योग से जुड़ा विषय है तो क्या भारतीय इसमें पीछे रह सकते हैं बिहार योग विद्यालय मुंगेर उसको भी सम्मानित किया गया पिछले कई दशकों से योग को समर्पित है
इसी प्रकार स्वामी राजर्षि मुनि को भी सम्मानित किया गया
उन्होंने लाइफ मिशन और लकुलिश योगा यूनिवर्सिटी की स्थापना की
योग का व्यापक सेलिब्रेशन और योग का सन्देश घरघर पहुँचाने वालों का सम्मान दोनों ने ही इस योग दिवस को खास बना दिया
मेरे प्यारे देशवासियो हमारी यह यात्रा आज आरम्भ हो रही है
नये भाव नई अनुभूति नया संकल्प नया सामर्थ्य लेकिन हाँ मैं आपके सुझावों की प्रतीक्षा करता रहूँगा
आपके विचारों से जुड़ना मेरे लिए एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा है
मन की बात तो निमित्त है
आइये हम मिलते रहे बातें करते रहे
आपके भावों को सुनता रहूँ संजोता रहूँ समझता रहूँ
कभीकभी उन भावों को जीने का प्रयास करता रहूँ
आपके आशीर्वाद बने रहें
आप ही मेरी प्रेरणा है आप ही मेरी ऊर्जा है
आओ मिल बैठ करके मन की बात का मजा लेतेलेते जीवन की जिम्मेदारियों को भी निभाते चलें
फिर एक बार अगले महीने मन की बात के लिए फिर से मिलेंगें
आप सब को मेरा बहुतबहुत धन्यवाद